का बोर्ड दिखाई दे रहा है अनुश्री चांडक--

विद्या इंस्टीट्यूट इनफॉरमेशन का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक बच्चे की सफेद बनियान और बैंगनी निकर पेहना है।

कट्टे मे सफेद रंग का जीव नज़र आ रहा है।

जो ड्रॉन्ट की शॉप नजर आ रहीं हैं यहाँ पर --

यहां पर घर पे सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के आइटम्स दिखाई दे रहे --

जहां पर वे एक प्रयोग करते दिखाई दे रहे --

यह राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल --

यह एक कपड़ों की दुकान नजर आ रही --

मशीन के अंदर काले कलर की ग्रिल्स नजर आ रही --

यहां एक एच_पी का पेट्रोल पंप नजर आ रहा --

चर्च के बाहर कुछ लोग इकट्ठे नजर आ रहे --

यह एक हरे भरे गमले दिखाई दे रहे --

मजदूर अपना कार्य करते हुए नजर आ रहे --

यह एक महिला डांस करते हुए नजर --

है यह डांस बहुत ही सुंदर दिख रहा --

कुछ लोग इधर उधर मनोरंजन करते दिख रहे--